सामने एक ब्लैक रंग की कार भी खड़ी हुई है।

सड़क के सामने एक गार्डन नजर आता है जिसमें बड़े और छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

पार्क के बीच से रास्ता गया हुआ है।

आमने एक इमेज लगी हुई है जिस पर महात्मा बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है।

एक आदमी के हाथ में लाल रंग का बैग है उसके सामने बाइक खड़ी हुई है।

सामने दरवाजे पर बलूंस लगे हुए हैं।

डैम में कुछ वर्कर कम कर रहे हैं।

उसके बगल में कुछ अन्य दरवाजे भी लगे हुए हैं।